यह एक रन-वे है और यहाँ पे फ्लाइट रन करती है जिस का नाम इंडिगो है और ये व्हाइट और बालू कलर में है और यहाँ पर अभी ये रुकी हुई है यहाँ बहुत सारे जने खड़े हुए हैं और एक जने यहाँ पे सेल्फी ले रहें हैं।

फूल है वाइट कलर का फूल है और छोटी सी टपड़ी है यहाँ पे और यहाँ एक छोटी सी लाइट्स लगी हैं और एक पे बहुत सारे सामान रखे हैं और यहाँ छोटे से मार्केट में बहुत भीड़ है।

यह एक गांव में एक शॉप है जो कि एम पी ऑनलाइन है इसका नाम है सरस्वती पुस्तक भंडार इंटरनेट सेवा। यहाँ पे फोटोस्टेट भी किए जाते हैं। लामीनेशन --

पढ़ने के लिए आते हैं और यहां पे बहोत सारी साइकिल खड़ी हुई है और एक बाइक भी है जो कि रेड कलर की है। एक छोटी सी शॉप टाइप है जो कि उसके ऊपर सामान भी र --

और यहां पर कॉर्नर में डी.जे. भी लगा हुआ है छोटा सा स्पीकर वाला और छोटा सा पड़े-पौधा भी लगाया गया है।